दिख रहीं हैं। लेकिन सब कुछ तो --

सब अच्छी है। चलो थोड़ी सी तो कम है लेकिन फिर भी व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर हरेक चीज मिल रहा है। जल्दी लिया जाये तो।

यहाँ से देखिए जिसको जिसको जो बाइक रखना होगा हर एक सुविधा है। साइकिल भी रखने की सुविधा है। देखिए यहाँ पोस्टर भी लगा है। अ लोग खड़े भी हैं। शांति है।

देखिये यहाँ ऑटो भी है पेड़ भी है दुकान भी भी लगे बिल्डिंग भी है।

रोड भी है। कितना अच्छा लग रहा है। कितना साफ है सुथरा है। यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं।

ई मंदिल बहोत ही अच्छा लग रहा है। ई कलश भी बहोत प्यारा लग रहा है। यहां बहोत से दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते --